और सा अगल बगल में पूरा चारों तरफ हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा नजारा लग रहा है।

यहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान है और उसके नीचे हरे भरे पेड़ लगे हुए है और नीचे दो तीन पत्थर पड़े हुए है। साइड में रोड बनी हुई है और उसके पीछे भी एक पत्थर झुका है।

ये स्टेडियम है और ऊपर दो लाईट भी लगी हुई हैं बहोत बड़ी-बड़ी और नीले कलर का फ्लोर है और सिट सिट भी पीछे बनी हुई हैं बहोत सारी।

और हरे कलर का बोर्ड लगा हुआ है पीछे उसपे कुछ लिखा भी है।

ये जिम है और बोहोत अच्छी जिम लग रही है और सामने एक बॉडी-बिल्डर की --

ये डैम है पानी रोकने के लिए और इससे पानी अभी छोड़ा जा रहा हैं। बहोत तेजी में निकल रहा है। बहोत --